उसने ऑरेंज कलर की निक्कर और सुरख रंग की--

एक बड़ा सा बोर्ड लगा जिस पे स्प्रिंग डाली स्कूल --

आदमी ने पिंक कर पिंक कलर की--

उसके साथ पीछे एक औरत नीचे बैठी हुई है जो कि कुछ काम कर रही --

में इसमें तीन आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

नीचे सुरख रंग का कालीन बिछाया गया है और लाइटें जल रही हैं।

बहुत सारे कपड़े लटकाए गए हैं इसमें जैकटे भी नजर आ रही हैं पेंटे भी नजर आ रही हैं।